कुछ जीवित है बाल्टी में और कुछ मृत हैं।

इस तस्वीर में हम एक शेर को देख सकते है।

जो धुप से बचने के लिए छांव की तलाश में एक ब्रिज के नीचे छोटा सा बैठा हुआ है।

ये शायद किसी चिड़िया घर की तस्वीर है।

हरी मिर्चियो में ताजी कोई एक जगह और जो ख़डाब हो चुकी है उसे दूसरी तरह कर रहा है ताकि उसे भी स --

जिसका उद्घाटन अभी ही हुआ है।

जिन्हें सब छात्राएं नोट कर रही है।

बीच में रस्ता भी बना दिया गया है।

और इसके ऊपर में कलाकृति भी बहोत ही अच्छी सुन्दर तरीके से बनी गई है।

और कुछ व् सड़ चुकी है तो कुछ एकदम लाल रसीली ताजी-ताजी है।

जिहोने अपनी कलाकृति से कुछ बनाया है।

गुंबा है जो लांबा लोग बुड्ढा लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा करते है।

यह एक्स एक्सटेंडेड हो चुकी है जैसे दिख रहा है।

काफी सारे बच्चे अपनी कलाकृति से अपनी रंगीन चित्र बना रहे हैं।